सामने तीन टायर डले हुए हैं तीन --

छात्रा हैं छोटे छोटे छात छात्र हैं |

क्यूंकि वाइट चदरों से बना हुआ है चादरों से |

इसपे लगा है तेजा बुक स्टाल ।

दो शेरवानी और एक हुडी रखी हुई है।

एक गाड़ी का कैरियर दिख रहा है।

जिसकी ना तो लम्बाई नाप सकते हैं ना तो चौड़ाई नाप सकते हैं |